किस तरीके से इंडियनस वहां पर जा करके अपनी डेली जरूरतो की अपने बच्चों की चीज़े खरीदते हैं। बुक पेन स्टेशनरी वगैरा के |

साथ ही मछली के अलग अलग प्रकार की चीजै हैं जिसमें एक तराजू भी रखा हुआ है और कटी हुई मछलियां भी है।

और ये भी किसी बड़ी नदी का सीन है जहाँ पर केले के वरकक्ष भी लगे हुए है।

स्टेशनरी शॉप का ये तस्वीर म स्टेशनरी शॉप के मालिक के दिखा रहें हैं जैसे कुर्सी पे वो आराम कर रहा है सामने कैलकुलेटर रखा हुआ है पड़ोस में फोटो कोपी मशीन है किताबें है पेन्सिल है स्केच पेन है इरेज़र है शार्पनर है।